वहीं शाप के आगे एक बाइक भी रखा हुआ है।

और सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

वायर भी दिखाई दे रहा है।

एक इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां बिल्डिंग के बरांदे दिखाई दे रहा है।

स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

और इंसान भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक स्टेज भी बनाया हुआ है।

ऊपर में डिशो प्रिंटिंग प्रेस का पोस्टर लगा हुआ है।

मुझे यहां हार्डवेयर का दुकान दिखाई दे रहा है।

आगे में दो ठो फ्लावर पॉट रखे हुए हैं।

काउंटर में एक लड़का बैठा हुआ है।

टेबल और चेयर भी रखा हुआ है।

मुझे यहां बहुत बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

एक स्टैचू भी बनाया हुआ है।

मुझे यहां फूल की दुकान दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर विनायक लिखा हुआ है।

दुकान के अंदर बहुत सारे मिठाई भी रखे हुए हैं।

छोटा छोटा फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।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

शैंपू भी दिखाई दे रहा है।

गैरेज को टीना से बनाया हुआ है।

दृश्य में रेड कलर के पेंट लगाया गया है।

रूम के अंदर गाड़ी भी रखा हुआ है।

गाड़ी के कलर रेड है।

बिल्डिंग के आगे गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

कुछ कुत्ते भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां व्ररंदा दिखाई दे रहा है।

ऊपर में फैन भी लगाया हुआ है।

दुकान के अंदर बहुत सारे कुर्ती रहे हुए हैं।

मुझे यहां बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।